फीड में बाइक दिखाई दे रही है जो कि काफी खराब स्तिथि में है। इसको रिपेयरिंग की ज़रूरत है। यह किसी मैकेनिक गराज में दिखाई दे रही है।

मे एक स्टेशन पे खड़ी ट्रेन दिखाई दे रही है। ट्रेन का प्रयोग यातायात के साधन के रूप में किया जाता है। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने के लिए आने-जाने के लिए ट्रेन का प्रयोग करते है। ट्रेन का प्रयोग काफी सस्ता और किफायती होता है।

गर्मी के दिनों मे भी पत्ता गोबी की सब्जी पाई जाती है लेकिन ये बहोत कम होता है। ये अधिकतर ठंडी के मौसम में देखने को मिलती है।

पीर मे एक दुकान मे रखे मोबाइल फोन दिखाई दे रहे हैं। मोबाइल फोन आज की टेक्नॉलजी का सबसे प्रमुख स्त्रोत है।

फील्ड में ट्रेक्टर दिखाई दे रहा है इसके पीछे खेत जोतने वाला हल लगा हुआ है | इसका प्रयोग खेत को जोतने के लिए किया जाता है।

तस्वीर मे आलू दिखाई दे रहा है जिसकी खेती किसान करते है गावों मे यह जमीन के अंदर मिट्टी के अंदर बोया जाता है यह बारहों महीने मिलने वाली सब्जी होती है।

तस्वीर केनरा बैंक की है केनरा एक भारतीय बैंक है। जहाँ पे लोग अपने पैसों को सुरक्षित रखने के लिए जमा कराते हैं तरह-तरह के अकाउंट खोलते हैं जैसे सेविंग अकाउंट एफ.डी. ये सब --

लाइब्रेरी में बोहत सारी किताबे पाए जाती हैं यहां पे हिन्दी इंग्लिश और इसके अलावा हर भाषा में किताबे पाई जाती हैं यहां पे लोग पढ़ने के लिय और किताबों को लेने के लिय जाते हेें ।

तस्वीर चर्च की है जिसमे ईसाई धर्म से जुड़े हुए पदाधिकारी दिखाई दे रहे है। इसमे बीच मे फादर बैठे हुए है फादर का ईसाई धर्म मे बहुत अधिक महत्व होता है।

इस नदी के पानी को रोक कर बिजली भी बनाई जाती है। इसका प्रयोग इसलिए भी किया जाता है कि बहोत अधिक पानी नदी मे इकठ्ठा ना हो जिससे आस-पास की जगहों और गावों मे बाड़ की स्थिति न बन पाए।

तस्वीर में कोई गाना गाते हुए एक बैंड की तस्वीर है। ये लोग तरह-तरह के गाना गाते हैं जैसे लोक संगीत या फिर वेस्टर्न म्यूजिक और अपनी गाने से लोगों को लोभवते है लोग अपना यहाँ पे अपना मनोरंजन करने के लिए और इन्हें सुनने लिए आते हैं।